इसके ऊपर कुछ अ अं किर तिरपाल डली हुई है।

और उसके बाहर एक गोर गाहिन दिख रही हैं जो अपनी पीठ दिखा रही है।

इसमें कुछ चारपाई रखी है।

जिसमें लाल रंग की शर्ट पहनी है काली पैंट पहनी है।

उसके सामने एक आदमी और बैठा है।

सफ़ेद रंग की पैकेट अह जीन्स पहनी है।

कुछ जो लाल रंग की है उनके आगे कुछ गमले रखे हैं।

यहां पर कुछ टेबल्स रखे हुए हैं।

अह और उस पर मैकेनिकल --

पेंटिंग लिखा हुआ है जो हरे रंग से है।

कुछ कार्टून दिख रहे हैं जिस पर वाइट सफेद कलर पन्नी ल--

इसमें एक दुकान दिख रही है दुकान के अंदर एक लड़का दिख रहा है।

अ अ खंभा भी दिख रहा है दो बड़े से तलाब दिख रहे हैं।

कुछ टीम का सीन दिखाइ दे रहा है।